यह एक दुकान है शॉप है ये एक नाई की दुकान है और नाई की दुकान में एक लड़का है जो कि बैठा हुआ है चेयर पे बाल कटवा रहा है।

ये कोई डॉक्टर हैं उसके गले में डॉक्टर का --

और रिसेप्शन पे जो हॉस्पिटल का लोगो है उसके कलर है व्हाइट और ग्रीन --

सभी लोग अपने काम कर रहे हैं लैपटॉप कम्प्यूटर में कम्प्यूटर में सारे लोग काम कर रहे हैं सारे कलीग्स है।

सामने जो एक पेड़ सजा रखा है बना रखा है पेड़ उसके आसपास में जो छोटे छोटे फूल बना रखे हैं फूलों का शेप दे रखा है।

जमीदार वस्त्रालय और कपड़े यहां अंदर रखे हुए हैं काफी सारे।

और अपने सर पे जो है एक रखी हुई है स सफेद कलर की--

और एक वैन खड़ी हुई वैन गाड़ी खड़ी हुई हैं उधर भी ग्रे कलर में--

सिंगिंग के लिए रिकॉर्डिंग के लिए और दो खरगोश रखे हुए स्पीकर पे।

और जिस यहां पर कि दो घोड़े हैं जो कि दोनों ही घोड़े पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है।

अ रिटेल आउटलेट ऑफ खादी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि खादी प्रोडक्ट्स होते हैं वही है।

और इसके प्लेट में जो है चिकन लेग पीस रखे हुए है। चिकन लोलीपॉप यहां चिकन लेग या फिर--

और उसमें जो है चटनी है हरे कलर की ग्रीन कलर की चटनी है।